स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे हैं और स्विमिंग पूल के बाहर कई लोग खड़े हैं। बड़े-बड़े झूले लगे हैं और बड़े-बड़े पेड़ भी लगाए गये हैं।

इस तस्वीर में एक बैंक दिखाया गया है। बैंक का नाम जूनीय बैंक एटीएम है। इस --

मेन दरवाजा बंद है और सामने बैंक के साइड में एक स्कूटी पार्क की गई है।

इस तस्वीर में एक दुकान की दिखाई गई है। दुकान के ऊपर लाल रंग का बोर्ड लगा है जिसपर ए.टी.एम. लिखा गया है।

इस तस्वीर में एक ए.टी.एम. दिखाया गया है और एटीएम का नाम स्टेट बैंक ए.टी.एम. है।

इस तस्वीर में एक ए_टी_एम दिखाया गया है जिसका नाम एस_बी_आई ए_टी_एम है।

इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिखया गया है। स्विमिंग पूल में बहुत सारे लोग --

यह तस्वीर में हमें एक एटीम दिखाया गया है एटीम का नाम यूनियन बैंक एटीम है एटीम का मेन दरवाजा बंद किया गया है।

इस तस्वीर में एक सड़क दिखाई गई है। सड़क के ठीक साइड में दो ऑटो खड़े हैं।

दो आदमी काले रंग की कुर्सी पर बैठे हैं और दो आदमी उनके साथ खड़े हैं। एक आदमी साइड में बैठा है।

बहुत सारी किताबे और कॉपीयां रखी हैं दुकान में --

इस तस्वीर में एक दुकान दिखाई गई है। दुकान में बहुत सारी किताबें रखी गई हैं।

इसका मेन दरवाजा बंद है। पार्लर के अंदर एक आदमी कुर्सी पर बैठा है।

इस तस्वीर में एक ए.टी.एम. दिखाया गया है। ए.टी.एम. का नाम यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया है।

इस तस्वीर में एक ए.टी.एम. दिखाया गया है जिसका नाम केनरा बैंक ए.टी.एम. --